स्विमिंग पूल को दीवारा पर लाइट चस रही हैपाइप रोपोयडा है चार--

एक साइड में कार्टून रखेडॉ है ऊपर सीरिया निकाल रखिया है।